जय माला होगा और यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी का फोटो भी है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं और ये --

हम आदमी सब ड्रेस पहने हुए हैं और ये अह बैलून लगे हुए हैं यहां।

यहाँ पे बकरियाँ है और ये बकरीईई सब चारा खा रहा है और यहाँ पे --

इत्यादि सारे कुछ मिलते हैं और ये यहाँ पे मेंस पार्लर है।

और ये यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे शीशा भी लगा है और यहाँ --

ये हम्म हरा कलर का घर है जो यह घर पेंट किया गया है और यहाँ पे --

ई नम आ दो ह दो जेंस खड़े हैं और एक बच्चा खड़ा है और दो एक जेंस ऊपर चढ़ा हुआ है सीढ़ी के --

जमीन पे बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे हरा भड़े गास है उस पे बैठे हुए हैं और ये एक --

इस पे लिखा हुआ है बॉक्स नंबर थ्री बॉक्स नंबर टू और ये सिनेमा हॉल --

व्हाईट कलर से खिरकी का पेंट है व्हाईट कलर से एक बोर्ड भी है और एक वायर भी गया हुआ --

पौडे लगे हुए है और कई सारे जिसपे आदमी नहीं है और ये पानी बहोत सारा पानी देखने को मिल रहा है।

ना भारतीय स्टेट बैंक काउंटर नंबर तीन भारतीय स्टेट बैंक काउंटर नंबर दु ।

ट्रेक्टर भी है और यहाँ पे एक स साइकिल से आदमी जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे --

यहाँ पे फू उ कार्ड उ कार्ड छपता है और ये बोर्ड और ऊं कल लगा हुआ है और बोर्ड का कलर नीला है और यहाँ पे शादी कार्ड्स आए स्कूल टै --

अम्बै और व्हाईट कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है बगल में एक लोगो बना हुआ है रेड कलर का लोगो है और यहाँ पे नीचे को जी लॉक्स का प्रचार हुआ है और यहाँ पे --

ये बहोत सारे साइकिल्स लगे हुए है और यहां पे काफी--

यहाँ पे गम घर मकान का काम हो रहा है और य यहाँ म ऐऐ यहाँ पे लेबर म्म काम मसाला को मिक्स कर कर के छत पे --

पे कई सारे पे हरे भरे पैर पौधे हैं और ये स्कूल का नाम है ऑडिटीओरियम ऐडिटोरियम इज़ है और ये --

ये एक आर्मी अ म आर्मी लोग है ये आ ऐय एक कपड़ा पहना हुआ है चितकबरा कपड़ा पहना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग --

अमम्म फील्ड का फोटो है और यहाँ पे बस --

यहाँ पे एक अअ ओओ ऑटो रिक्शा ई रिक्शा लेकर के आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पे अ ओओ --

ओमम एक ब्लैक है ओ अ ग्रे है।

फोन ने कवर किए गए हैं और कवर का कलर व्हाइट है और ये यहां पे--

रंग बिरंगे फू फूलों से सजाया गया है और --

राजकीय मध्य विद्यालय आजू सुगोली प्राथ प्राथमिक नागरिकता चंपारन --

और गेट का कलर ग्रीन है और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जो --

यहाँ पे साइकिल शोरूम है जहाँ पे बहोत साइकिल लगे हुए हैं और ये साइकिल का --

कलर ब्लैक है और ये रेड है और रिम का कलर रेड है यहां पे लाइट्स लगे हुई है और जो चमकता है और --

भी छोटे छोटे साइकिल रखे गए हैं बच्चे को आ सब रंग बिरंगे कलर रखे गए हैं।